और यहाँ पर एक औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही है। एक औरत बैठी हुई दिखाई दे रही है। जिस ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं।

नीचे की तरफ सड़क दिखाई दे रही है। एक पेड़ दिखाई दे रहा है। पेड़ के पास एक झंडा दिखाई दे रहा है।

तालाब में बीचों-बीच एक बड़ा-सा पत्थर रखा हुआ है।

पीछे दीवारें दिखाई दे रही हैं दो और ऑटो खड़े हुए दिखा --